यह इमेज में हमें एक बड़ा-सा मैदान दिख रहा है जो की बहुत बड़ा है| उसके अंदर हमें बच्चे खलेते हुए नजर आ रहे हैं जो की टेनिस का नेट लगा रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं।

जो की बहुत ऊंचा पूरा है तथा वहां पर हमें सफेद रंग की बाउंड्री बनी हुई दिख रही है वहां पर हमें बहुत से बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

बड़ी-बड़ी है तथा वहाँ पे लाल रंग के स्लाइड ओरेंज रंग के स्लाइड और वहाँ पे चढ़ने वाला झूला भी नजर आ रहा है वहाँ बहुत सारे रंग-बिरंगे झूल भी लगे हुए हैं।